बहोत ही ब्यूटीफुल सा एक पार्क हैं। पार्क में बच्चों के लिए झूला लगा हुआ हैं।

इस फोटो में बहोत ही सुंदर दृश्य लग रहा है।